और एक जन जो है वो पानी लेने जा रहे हैं।

और भी बहुत सारे कपड़े इसमें रखे हुए हैं।

और इसमें बहुत सारे लाइट भी लगा हुआ है।

लड़का लोग इसमें वर्कआउट कर रहा है और इसमें एक टेबल लगा हुआ है।

यह बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है और इसमें बहुत सारे भक्त जनों आए हुए हैं।

वो बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस जो रेड कलर का है जिसमें बहुत सारे फ्लॉवर भी लगे हुए हैं।

वो कुर्सी लगी हुई है एक मकड़ी का बच्चा बैठा हुआ है।

यह किसी स्वादिष्ट का एक फास्ट फूड दुकान है।

बाहर में ब्लू कलर का शीशा लगा हुआ है और भी इसमें बहुत सारा सामान है।

और एक टीशर्ट पहना हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है।

और इसमें दिए जला रहे हैं।

इसमें टोटल दो लड़के खड़े हैं।

जो ब्लैक कलर का टी_शर्ट पहना हुआ है और एक ब्लैक ब्लू व्हाइट कलर का टी_शर्ट पहना हुआ है।

यह तालाब है और इसके आस पास बहुत सारे लोग है।